बहोत सारे घोड़े दिखाई दे रहे हैं जमीन दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे --

चिया दिखाई दे रही हैं कुर्सी दिखाई दे रही है कम्प्यूटर एवं टी_वी दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है पंखे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं तालाब दिखाई दे रहा है।

तालाब में कीचई दिखाई दे रही है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं जिसमें पत्तियां हैं।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी दिखाई दे रही है टब दिखाई दे रहा है टब में पानी दिखाई दे रहा है बाल्टी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं बाइक दिखाई दे रहा है ऑटो दिखाई दे रहा है बैग दिखाई दे रहा है स्कूटी दिखाई दे रही है।

बैग दिखाई दे रहा है जेंट्स दिखाई दे रहे हैं ठेले दिखाई दे रहे हैं दुकानें दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आसमान दिखाई दे रहा है टेहनी दिखाई दे रही है पेड़ की।

आसमान दिखाई दे रहा है बहोत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं छत दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं तालाब दिखाई दे रहा है।

पेंट पुता हुआ है। लाइट ग्रीन और ब्लू कलर की दिख रही हैं। पर्दे लगी हुई हैं। येलो और पिंक कलर की खिड़कियां दिख रही हैं।

आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं ध --

कंकड़ दिख रहे हैं।

खम्भे दिख रहे हैं झूला दिख रहा है लाइट्स दिख रही हैं झंडा दिख रहा है जेंट्स दिख रहे है लेडीज दिख रहे हैं।

व्हाइट कलर पेहन रहे हैं।

दीवाल पर येलो कलर पुत रहा है। जमीन पर कारपेट बिछा हुआ है। ब्लू कलर का सोफा रखा हुआ है। टेबल रखे हुए हैं।